कंस्ट्रक्टेड एरिया लग रहा है और एक गाड़ी जा रही है वाइट कलर की।

खेल रहे हैं या पार्टिसिपेट किए हुए हैं जीतने के लिए।

एक गेम लग रहा है जो बच्चों के लिए अच्छा होता है सबने अलग अलग तरीके के कपड़े पेहने हैं।

पूरा कुछ दिखा नहीं रहा है पैर में दोनों का क्लियर है।

ये एक गार्डन है गार्डन के बीच में बहोत सारे फुले हैं इसे इन्हें बहोत अच्छे से संभाला नहीं गया है क्योंकि--

यह जगह है बहुत सारा गाड़ियां है और यहां पे फोन का दुकान है ओप्पो वीवो नाम का शॉप है।

ये मर्द है और यहां पे बहोत सारे लोग आए हुए है क्योंकि इन्हें आइसक्रीम खाना है।

ये एक जगह है पूरा मिशन पार्ट टाइप है तीन बेंच दिख रहा है।

और शायद से यहां के जो ओनर है बहुत अमीर है और--